इस फोटो में बहोत सारे व्यक्ति नजर आ रहे जोकि एक जगह इकट्ठे हो रहे है।

और यहां पर चारों ओर बहोत सारी मिट्टी लग लगी हुई है।

और पीछे कुछ कांच के गिलास है और पानी की बोतल नजर आ रही है और पीछे कुछ कुर्सियां भी नजर आ रही है।

साइड वाली विंडो खुली हुई है और पीछे वाली भी विंडो खुली हुई है।

उसके हाथ में एक वॉच भी नजर आ रही है उसके पीछे एक नदी नजर आ रही है और उसके साइड में एक रोड नजर आ रहा है।

इसमें वाइट कलर के फूल भी लगाए गए हैं।

और पीछे एक स्टेज नजर आ रही है।

इस फोटो में सामने एक दुकान भी नजर आ रही है।

जो कि इस कैफ़े में बैठे हुए हैं।

बाहर की ओर भारत माता का झंडा भी लगा हुआ है और यहाँ पर बाहर की ओर एक बॉक्स भी बना हुआ है जिसके अंदर कुछ नहीं है।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

और यहां पर उनका भी कुछ पीछे सामान रखा हुआ है।

और उसके पीछे एक वो लड़का जो रेड टी शर्ट पेहन के दिखाई दे रहा है।

और सामने एक गेट भी नजर आ रहा है जिस पर व्हाइट एंड ब्लैक कलर हो रहा है उसके पीछे एक मस्जिद टाइप का नजर आ रहा है जिसपर लाइटिंग लग रही है।

यहां पर उसके सामने एक झूला भी बना हुआ है और उसके साइड में एक पेड़ भी है।

और पीछे अ बहुत सारा ग्राउंड भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक शादी का टेंट दिखाया गया है जो की एंट्री गेट के साथ दिखाया गया है।

अध्यापक ब्लैक शर्ट एंड ब्लू पैंट पहने खड़ा हुआ है।

उसके सामने एक गार्डन भी नजर आ रहा है गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं।

वहां पर बोहोत सारी मछलियां हैं। इन्होंने अलग भी मछलियां कुछ रख रखी है और एक बकेट में भी मछलियां रख रखी हैं।

सामने एक तराजू भी नजर आ रही है जिसमें वह तौलकर मछलियों को देता है और पीछे कुछ व्यक्तियों के पैर नजर आ रहे हैं।

इधर एक टेबल भी नजर आ रही है जो की शीशे की बनी हुई है और पीछे एक मशीन भी नजर आ रही है।

यहां पर टेंट ग्रीन कलर का लगाया गया है।

अंदर के ओर कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में तीन से चार बाइक नजर आ रही हैं।

जहां पर कुछ स्कूटीयां और कुछ बाइक हैं।

फोटो में कुछ किताबें भी नजर आ रही है और कुछ पैने भी।

और जो वह ड्राइंग करता है वह लकड़ी के उसपे करता है तो वह लकड़ी की चीजे भी नजर आ रही--

और साइड में भी बहुत सारा समान रखा हुआ है।

और यहां पर एक दीवार नजर आ रहे है जिस पर ग्री ग्रीन कलर हो रहा है।